एक खम्बा खड़ा हुआ है एक नाली--

बड़े-बड़े से पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं कुछ छोटे पेड़े भी--